साइड से लोहे का बार्केडिंग लग रहा है।

यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है जिस पर सफेद रंग की पेंट की गई है।

दो व्यक्ति सूट पहन कर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने ग्रीन साड़ी पहनी हुई है एक बच्ची जा रही है।

इस फोटो में बहुत सारा लोहे का सामान बिखरा पड़ा है।